बहोत बड़ा हॉल है हॉल के किनारे में रूम है लाइन से--

और गेट के सामने दो लड़की एक लड़का आ रहा है उसके अगल बगल में छोटे छोटे गमला में--

और बांदा में अह चेयर लगे हुए है कुछ चेयर बगल में टी टेबल और कुर्सी रखा है आगे में दो तीन व्यक्ति जा रहे हैं।

बहुत बड़ा हॉल है हॉल में टेबल चेयर जमा हुआ--

खंभे भी हैं जिसमें एक--

एक आदमी खड़ा हुआ है और बहुत सारे बाइक --

एक बहुत बड़ा हाल है जिसमें लाइन से साइकिल रखी हुई है बच्चे लोग का है बड़े लोग का है।

यहां एक रोड है जिसमें बहोत सारे दुकान लाइंस लगा हुआ है यहां पर एक--

घड़ी दिखाई दे रहे है और दोनो पर्स के पीछे मे एक घर--

ये छोटे छोटे बिजली लाइटिंग से सजाए गए हैं और सीढ़ी है स्टील का स्टैंड लगा हुआ--

और एक लेडिस दिख रही है।

दो दो ठो पाउच है सब का सब में और स्टैंड में लटका दिए गए हैं।

अलग अलग अअ रेट में अलग अलग डिजाइन का--

दुकान का बहोत बड़ा हॉल है जिसमें--

इस पार से उस पार लगा हुआ है और दीवाल के किनारे किनारे लाइन तार--

कुछ खंड में रखे हुए हैं।

बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और लाइट भी लगा हुआ है। लाइट --

उसमें कुछ ग्राहक का हैं उसको अलग अलग--